और छोटी छोटी मछलियां भी हैं।

यहां पेट्रोल पंप दिख रहा है एक ऑटो है डस्टबिन भी रखी हुई है कुछ लोग हैं मोटरसाइकल भी खड़ी हुई हैं।

लाइट भी लगी हुई है फुगे लगे हुए हैं कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और लाल रंग से--

और भी नीली रंग की गाड़ी है सफेद रंग की हैं।

ओ पीसी मिर्ची भी रखी हुई है नमकीन रखी है।

सब्जी की भी है फल फूल भी दिख रहे हैं।

एक बहुत बड़ी दुकान है पुस्तक मिलती हैं।

और से कपड़े के गेट भी लगे भाए हैं।

यहां एक अच्छी दुकान है कुछ कांच के बर्तन भी हैं कुछ लकड़ी के भी हैं प्लास्टिक के भी है।

एक अच्छा पार्क है बीच में पानी भी भरा हुआ है एक छाता भी लगा हुआ है कुछ बच्चे भी हैं।

और खम्मा भी दिख रहा है घास वगैरा भी है।

अच्छा बड़ा मकान है कुछ लोग फोटो भी खींच रहे हैं पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और सु रज भी दिख रहा है अच्छा मैदान भी है।

एक बहोत अच्छा ऑफिस है मकान है ऊपर दो लाइट लगी है।

बहोत बड़ा मैदान है कुछ लोग भी हैं बस खड़ी हुई है कुछ लोग उसमें बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं और--

निवार स्टेशन है और पंसार में भी डाली हैं गेट भी है ट्रेन भी खड़ी हुई है।